यह एक पूल है इसका पूल निर्माण अभी नहीं हो पाया है इसके निर्माण किया जा रहा है इस दो गांव के संपर्क में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा।

इसका उपयोग किया जाता है।

और जी.एस. जोड के किनारे ऑफिस पुलिस थाना पार्क भी है।

यह टमाटर की चटनी या सब्जी भी खाने में --

खेत में धान लगी हुईयां और इस खेत में एक मड़ईया भी हैं जिसमें